यहाँ पर बहोत से लोग ख यह कपड़े खरीदने के लिए आते हैं ।

यह ग्राउंड के चारों और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहें --

यहाँ पर सिर्फ लेडीज के ही कपड़े मिलते हैं। यहाँ से लोग खरीद कर ले जाते हैं।

यह एक सैलून है। यह सैलून काफी बड़ी है।

यहां पर एक नाई भी रहते हैं वह दाढ़ी बना रहे हैं यहां पर --

यह झरने के नीचे बोहोत सारे तलाबो में पानी हो चुकी है।

यह बिंडिंग में काफी खंभे होंगे। यह बिंडिंग में काफी सारे खिड़कियां भी है।

पार्क है यह पार्क काफी बड़ी है।

यह मंदिर बहुत ही सुंदर सजा दिए गए हैं।